ह बगल में पेड़-पोधे बड़े-बड़े पेड़-पोधे लगे हुए हैं।

यहाँ पेड़-पौधे झाड़ियाँ भी इसके ऊपर उग चुके हैं।

यहाँ सामने बहोत उच्ची-उच्ची पहाड़ियां हैं।

सभी व्यक्ति काट रहे हैं और वह कई व्यक्ति खरीद रहे हैं।

यहाँ सामने एक घर है। घर के बाहर एक पेड़ है।

डेकोरेशन के सामान साज-सजावट के सामान लगी हुई है।